नीचे की तरफ एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिस पर ताज बाजार सुपरमार्केट लिखा हुआ है नीचे की तरफ शीशे के अंदर शेल्फों में कुछ समान लगा हुआ है खाने पीने का यहाँ गेट शीशे का है।

नीचे की तरफ काउंटर पे कुछ आटे के कट्टे रखे हुए हैं एक वेइट मशीन हैं अंदर भी काफी सम्मान लटका हुआ हैं रस्सी पर साइड पे एक फ्रिज रखा हुआ हैं और साइड पे झाडु भी नज़र आ रही हैं बालटी के साथ।

सामने की तरफ एक जनरल स्टोर नज़र आ रहा हैं जिसमे शेलफो पर काफी खाने पीने का सामान नज़र आ रहा हैं बीच मे कुछ स्टील के डब्बे पड़े हुए हैं।